बालू में दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है।

और भी बोहत सारी चित्र लगाई गई है फूलो से सजाया गया है बहुत-सारी लाइट्स लगाए गए हैं।